एक रेड कलर का प्लास्टिक है और बोरा है जिसके ऊपर बहुत सारे मछलियां रखे हुए तराजू नजर आ रहा है।

बगल में एक रेड कलर के कॉल कार का पहिया नजर आ रहा है साइड में एक बोलेरो दिख रहा है।

नीचे प्रिंटर दिखाई दे रहा है।

एक बहोत बड़ा मूर्ति बना हुआ है बैल का जिसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है।

एक आदमी का सर दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे लोग चल रहे हैं।

बहौत बड़ा पत्थल है उसके ऊपर से वाइट कलर का पानी गिर रहा है।